आदमी बैठे हैं और उधर भी खड़े हैं जो हमे थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं और पानी खूब अच्छा नजारा है पानी बहने का--

और नदी है नदी के किनारे बहुत सारे बोट नजर आ रहे है नदी में पानी भी है।

यह कोई कॉलेज लग रहा है कॉलेज के कैंपस जैसे --

बहुत बढ़िया लोग है। बाहर से गेट है। अंदर में अच्छा फ्लैट है।